इसमें हमे एक बारूद दिखाई दे रहा है जिसमे कुछ फूल के पेड़-पौधे लगे हुए है ।

सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं ।

नदी में कुछ टापू बने हुए है आसपास में हरे पेड़ -पौधे--